पास में एक और दुकान भी नजर आ रही हैं इसमें ये शीशा लगा हैं शीशे पे कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक कोई अस्पताल है इस अस्पताल में--

इस फोटो में ये कोई एक कपड़े की शॉप है इसमें एक कपड़े रजाए हुए हैं।

उधर साइड में पेड़ पौधे हैं और भी अच्छे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

कोई अब नाव भी खड़ी है लकड़ी की।

और ये पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर में रंग बिरंगे शब्दों में ऊपर लिखा भी गया है।

उधर साइड में एक पोस्टर लगा हुआ है नीले कलर का।

कुछ शब्दों में लिख भी गया हैं।